इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है हॉल में पाइप के डंडे से सेफ्टी के लिए दिया गया है।

तस्वीर में हमें एक मंदिर नजर आ रहा है मंदिर के आगे एक लोहे का गेट है आसपास बहुत सरे पेड़ भी लगाये गए है।